यह लड़का फोन पर बात कर रहा है यह चेक शर्ट पहना है पैंट पहना है इसके आस-पास बहुत सारी बुक्स और कॉपीज रखी है।

यह एक एक्सिस बैंक हैऔर ए.टी.एम है जोकि ट्वेंटी फोर इंटू सेवन हावर्स खुला हुआ रहता है --

यह एक मिठाई की शॉप है जहाँ पर बहुत सारी मिठाई रखी है कुछ दालचूड़ा रखा है।